खिड़कियों में एक पर्दे लगाए गए है।

फोटो ली गई है और इसमें मौसम खराब दिखाई दे रहा है और काले रंग के बादल छाए हुए हैं।

सिलेंडर और कट्टा बहोत सारे कट्टे दिखाई दे रहे हैं और एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है। काउंटर के ऊपर भी बोतले रखी गई हैं और दूसरी मंजिल में --

बहुत रंग बिरंगी साइकिलें बेचने के लिए रखी गई है और इस कमरे के अन्दर लाइटें भी जलाई गई हैं।

और इसमें साइकिलों के सिवा और कुछ नहीं है।